पानी का दिख रहा है ब्लैक कलर का गेट है बल्ब ट्यूब लाइट लगी दिख रही नीचे रेड कलर दिख रहा।

पेड़-पौधे दिख रहे हैं बहोत सारे जेन्स खड़े हुए दिख रहें निचे पिंक कलर दिख रहा ब्लैक व्हाइ --

मकान दिख रहा है व्हाइट कलर का पेड़-पौधे दिख रहा है बहुत सारे ग्राउंड दिख रहा है उसमें जाली बनी हुई दिख रही है।

सारे जेंट्स खड़े हुए दिख रहे है खिड़कियां दिख रही है ब्लैक कलर की ग्राउंड में ग्रीन कलर की धुआ दिख रही है एक ग्राउंड बना हुआ दिख रहा है पेड़ --

की पंख लगे हुए दिख रहे हैं गेट लगे हुए दिख रहे हैं दरी लगी हुई दिख रही हैं नीचे एक ब्लैक व्हाइट कलर की --

दिख रहा है मेंहदी कलर दिख रहा है सब पड़े हुए दिख रहे हैं ऊपर भी कलर दिख रहा है बहोत सारे डिजाइन पंखे लगे हुए --

ए.सी. कूलर की दुकान दिख रही प्रेस दिख रही पंखे दिख रहे हैं अलमारियों में बोतल टंगी हुई दिख रही है जेंट्स बैठें हुए दिख रहे --